उजला और ब्लैक कलर का स्वेटर पहना है टोपी लगाया है बॉय का।

तार है अगल बगल बोर्ड है और चोंगा लगा हुआ है।

एक हरा में है और एक गुलाबी में ऊपर है।

एक बाइक पर एक उजला टी शर्ट पहन के एक आदमी बैठा हुआ है।

व्याम मारने वाला है एक पोल है हरा भरा घास है फील्ड में और खेलने लायक जगह है।

अगल बगल गमला में फूल है और बहुत सुंदर दिख रहा है।

एक बड़ा सा घर है।

और करकट दिया हुआ है।

व्हाइट से पेंट किया गया है पूरा।

एक बड़ा सा बिल्डिंग जो लोहा का गेट लगा हुआ है।

ढका हुआ कार है।

बाउंड्री मारा हुआ है।

आसमानी कलर से पेंट किया गया कैलेंडर है।

पौदान रखा हुआ है बगल में कुर्सी है।

ऊपर में टायर रखा हुआ है।